व इसमें काफी सारे दोकान है तीन दोकान है और ये एक मार्बल है अ अच्छा कंपनी है ये मार्बल है गोरा रंग देखने में भी काफी सुंदर लग रहा है आगे से लग रहा है पीछे से नहीं ये भी पीछे ही गंदे है ।

देखिये ये कपड़े का दुकान है और बगल मे बहुत सारे लोग कपड़े के लिए आते है काफी लोग को कपड़े पसंद होते है जैसे रंग बिरंगे कपड़े है रंग बिरंगे कपड़े बगल मे बैग है।